और काफी सारे बच्चो ने कराटेवाली ड्रेस पेहन रखी है ये एक फुटेज एक स्कुल का हैं।

तो ये देखने मे ऐसा लग रहा है ये तसवीर में जैसे एक घर बन रहा है जब तसवीर खिची जा रही है।

दोस्तो इस फोटो मे हमे दिख रहा है एक कॅफे जिसके सामने एक लडके ने खडे होकर फोटो खिचवायी है।

तो जैसा की आप सब लोग देख रहे है इस तस्वीर मे एक मछली बेचने वाला दिख रहा है।

जैसा कि आप सब लोग देख सकते है कि ये एच_डी_एफ_सी बँक कि सामने का फोटो है जहा पर काफी भीड लगी हुई है बँक मे ए सी भी लगा है और बहुत सारी गाडी खडी है।

तो दोस्तो यहाँ पे आप सब लोग देख रहे है एक आदमी खडा हुआ है उसने सेफ्टी कॅप भी पेहन रखा है और निले हरे कलर कि जॅकेट भी पेहन रखी है और पीछे तार लगे हुए है।

यहाँ आपको सामने वाली तस्वीर मे दिख रहा है ये मछली बेचने वाला है।

अब के पास खडा हुआ है ये एक बँक का बाहर से लिया गया फोटो है इस बँक का नाम इलाबाद बँक है।

सब लोग देख सकते है य हमे सामने इस फोटो मे।

एक लडका खडा हुआ दिख रहा है जिसने पर्पल कलर कि शर्ट पेहनी हुई है ये एक अ न नदी के उपर बने ब्रिज के उपर खडा हुआ है।

मे निले कलर कि शर्ट पेहनी है और पिछे और भी लोग खडे हुए है ये फोटो एक जिम का है।

और यहाँ पे बडे लोग भी खडे है और ये देखने मे काफी सुंदर लग रहा --

तो अच्छा हि है नॅच्युरल पत्थर और कित्ते अछे पत्थर लग रहे है यहाँ पे नदी हो सकती थी शा --

जैसा कि आप सब लोग देख सकते है इस तस्वीर मी एक लडका खडा हूआ है जोकी अपने सिक्स एब्स दिखा रहा है।

और उसने व्हाईट कलर कि बनियान पेहन रखी है उसके पीछे एक लडका खडा हुआ है जिसने ब्लू कलर कि टी शर्ट पेहन रखी है।